बहुत सारा कार लाइन बार से खड़ा हुआ है।

और सितार है बहोत सारा इंस्ट्रूमेंट --

मैं आसमान को एकदम खुला देख रहा हूं बहुत प्यारा है मौसम वहां का।

मैं एक इमेज को देख रहा हूँ जिसमें--

जिसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर गार्डन है।

शॉप के अंदर एक शॉप ओनर या एक कस्टमर भी बैठा है।

अच्छा सा लाइटिंग किया गया है।

यह सब यात्री है जो की स्टेशन में वेट कर रहे हैं।

मैं एक बहोत सुंदर नजारा देख रहा हूं--

और उसके पीछे चार लोग है जिनका ऑरोर्डिनेशन हुआ है ऐज फास्टर और एक चर्च है पीछे घड़ी लगा हुआ हैं।

रेस्टोरेंट मैं देख रहा हूं जिसमें--

सर्व किया गया है ये एक डेजर्ट है ये बहुत--

दो लोग बैठे हैं डाइनिंग टेबल पर।

मैं एक इमेज को देख रहा हूं।

और कलरफुल लाइट्स इसमें लगे हुए हैं।

जिसमे एक चर्च मे एक पासचर--

दिमाग बहोत खराब हो चुका हैं क्योंकि इसमें एक झरना हैं बहोत सुंदर हैं।

और उसके जस्ट बगल में एक मंदिर है जोकि--

एक जने रेड पेहना है एक जने पिंक और एक जने रेड और पेहना हैं।